ये एक पेड़ है ये एक खेत है इसमें कुछ लोग खेल रहे हैं।

ये बैंक है बैंक में लोग बैठे है में ऊपर एलईडी लाइट लगी हैं एक दीवार पर घड़ी लगी है

और अपने बच्चों को झूले पर फिसला रही है बहुत सारे बच्चे खेल रहे है।

पार्लर है पार्लर में चार चेयर रखी हुई है उसके सामने सींग लगे है सर धोने के लिए सींग सफ़ेद कलर के है एक नल लगा हुआ है एक हैंडशोवर भी है।

इ सामान है जो की मिटटी और लकड़ी का बना हुआ है यह एक टेबल पे रखा हुआ है सामान का कलर गोल्डन है और टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें अलग-अलग तरीके से पपेर से क्राफ्ट करके अलग-अलग तरीके की पिक्चर बनाई हुई है।

जो लाइन में ख लगने के लिए खड़े है ये एंट्री गेट है उसके बाहर एक बैनर लगा हुआ है उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और एक ब्लैक कलर का डस्टबिन रखा है।